कलर मतलब एशियन पेंट्स की दूकान है पेंट्स की दूकान के बहार--

चार पांच गेट खुले है और चार पांच गेटो में से पानी नजर आ रहा है बहुत तेज बहाव से गिर रहा है पानी पानी बहोत ज्यादा गन्दा है मटियाला जैसा है।

है बहुत ज्यादा बड़ा है वहा पे कुछ लोग घूम रे है कुछ लोग खड़े है तो कुछ लोग अपनी फेमली के साथ बैठे है एक थाली लेके।

बहुत सारी चप्पलस रखी है कुछ लोग झाड़ू दे रहे है वहा पे औरते घूंघट डाल के बैठी हैं।

और बहुत सारी हिरनीए पीछे कुछ हिरनीए घास भी खा रही है पीछे से--

ये एक नाइ की दुकान है मतलब एक सैलून है एक लड़का आपनी पिक ले रहा है उसने उसमे मुह पे फेस पेक लगवाया हुआ है।

टंगे भी है रूम के लिए और कार्टून्स भी है बहोत सारे स्टूल भी रखा हुआ है एक चेयर भी रखी है फेन भी है।